किराने की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें की बहोत सारा सामान भी--

दिख रही है आस पास हरियाली भी दिखाई दे रही है।

जैसे चूड़ियां और बच्चों की बैग्स भी दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में कुछ मुसलमान--

और एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक टेबल के--

दिख रहे हैं और बलून डेकोरेशन भी--

भगवान जी की कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

और एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

जिसमे काफी सारे कपड़े भी दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में जिम दिखाई--

मुझे इस चित्र में एक समीर नाम की बस दिखाई दे रही है।

व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें की काफी सारी अलमारी--

मुझे इस चित्र में दो--

जिसमें से एक का नाम जूस प्वाइंट है।